और ये देखने में काफी बड़ा लग रहा है और यहां पर खंभे भी लगे हुए हैं जिनके ऊपर लाइटें लग रही है।

जस्ट डिजाइन इंस्टीट्यूट के बाहर का दृश्य है।

वहां पे एक पोस्टर भी लगा हुआ है शाकुंभरी नेत्र चिकित्सालिए ।

और एक पोस्टर भी लगा हुआ है।

एक यहां पे टेबल रखी हुई है उसके टेबल के ऊपर वाटर कूलर रखा हुआ है।

एक और मेज़ रखे हुए रखी हुई है और इस उस मेज़ में एक छतरी रखी हुई है।

और यहां पर एक शीशा भी लगा हुआ है।

और यहां पर कुछ टिशू पेपर भी रखे हुए हैं और ऊपर बहुत सारी लाइटें भी लगी हुई है।

यहां पर एक अलमारी भी रखी हुई है।

यहां पर एक लड़का बैठा हुआ है और एक लड़का खड़ा हुआ ड्रायर से लड़के के बाल सुखा रहा है।

यह कार की एजेंसी है।

और यहां पर बहोत सारे पेड़ और फुलवारी भी लगी हुई है।

और यहां पर दो डॉक्टर है जिसमें एक का नाम डॉक्टर शेफाली नंदू नंदवानी है और दूसरे का नाम डॉक्टर महेश सलूजा है जो कि दोनों एम_डी है।

यह कार का शोरूम है जो कि बंद है।

यहां पर बराबर में कुछ कपड़े भी पड़े हुए हैं और पीछे बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

खेत में बगुला खड़ा हुआ है।

और इसके अंदर का दृश्य भी काफ़ी अच्छा है।

यहां पर काफी सारी लाइटें लगी हुई हैं।

जिम की मशीनें बहोत सारी हुई बहोत सारी रखी हुई हैं।

इसके के बराबर में कितनी सारी कुर्सी लगी हुई है दो टॉस की बॉटल रखी हुई है।

यहां पे वाहनों में तेल डलता है जिससे क वाहन चलते हैं।

और यहां पर सफेद रंग हो रखा है।

के_जी_एन सहज जन सेवा केंद्र है।

और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है जिस पर बैंक आफ बड़ौदा लिखा हुआ है।

और यहां पे ईटों का ढ़ेर भी पड़ा हुआ है।